साशा राम में बड़ा स्टेशन ट्रेन है उसमें एक आदमी लउक रहा है सारा से--

सोफा लाल कलर का है और नीचे बिछाया भी हुआ है कुर्सी लगाया हुआ है और--